यहां पे बहोत सारी शॉप हैं। जहां पे बहोत सारी लाइटें भी लगी हैं।

और आस-पास भी बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रह हैं और सामने के साइड एक बिल्डिंग दिखाई दे रही जिसका कलर सफ़ेद है।

और यहाँ वाई अअ पर ब्लैक और रेड कलर का कारपेट बिछा हुआं दिखाई दे रहा है।

और जिनका कलर एं ब्लैक है और कही कही पे येलो भी दे रखा है।